औरत भी या आदमी खड़ा है।

मरम्त कर रहे हैं एक सीटी भी रखी दो सीढियां है बहोत सारी कुर्सियां बिछी हुई है।